और घर के जस्ट साइड साइड में विंडो साइड में डेकोरेशन लाइट जो लगा हुआ है।

जोकि लग रहे है कि ये मेडिकल का अंदर में है।

जोकि लोकल जैसा लग रहा है मौसम भी एकदम सुंदर सा--

जो कि ग्राउंड फॉर्मेशन जो एकदम सफेद कलर का और--

और स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में प्लास्टिक में कुछ गिर गए हैं और एक टेबल भी हैं यहां पे।

इस फोटो पे बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा है।

दरवाजा जो ब्राउन कलर का है।

और नीचे में मुरा और--

कोई कोई बैठ के है कोई कोई जो लाइट जला के हैं।

और छे सात लोग कुछ अपना अपना काम में बिजी हैं।

बाकेट जो ग्रीन कलर का है।

जो कि नदी का बीचो बीच में बहुत सारा पत्थर और पानी दिखाई दे रहा है।

जो कि है अह सामान लेने खड़ा हो रहा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

उसका घर का ऊपर एक लोगो देखी हुई है अह ब्लू कलर में पेंट करके।

और क्लाउड जो इसमे वाइट कलर का दिखाई दे रा है और--

और ये घर का नीचे में कुछ लोग खरा करके है।

जो कि ब्लू कलर और पिंक कलर का टी_शर्ट और व्हाइट कलर का शर्ट लोग पहन के है।

और कोई कोई बैठा हुआ है।

और आगे वाला वाल में वाइट कलर का रैक्टेंगुलर शेप में उसको पेंट करके है।

और इसको कलर-पेपर और बैलून से डेकोरेशन करके है।

सामने में एक बाइक खरा हो के है जिसका ऊपर एक बसता रखके है।